ग्रीन कलर का शेड बनाया गया है और मैट डाला गया है ग्रीन कलर का।

रेड कलर के इसके पोल्स हैं गैरेज के और ब्लैक कलर का इसका --

इस घास के बीच में एक पोल है पोल के साइड में लेफ्ट साइड में एक घर है जो की --

इस गेट के बीच में एक बैनर टांगा गया है।

और ऊपर बहुत ही प्यारा व्हाइट और ब्लू और रेड कलर का कॉम्बिनेशन के साथ तैयार किया गया है स्टेज ।

ग्रीन कलर की वाइट कलर की टेबल्स तैयार की गई हैं।

यहां पर दो-चार लोग हैं जो कि इस ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं इस ग्राउंड को व्हाइट कलर के बाउंड्री से कवर किया गया है।

इस पोस्टर में कलर किये वॉल है पूरी।

व्हाइट कलर का फ्लोरिंग की गई है टाइल्स के थ्रू ।

यहां एक लड़का है जो की --

सामने ग्लास से शेडेड है।

ये रोड है रोड के किनारे एक फ्रूट वाला अपनी दुकान चला रहा है।

जो कि इनको फॉलो थ्रू कर रहे है और मैम भी है।

यहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पर चार इलेक्ट्रिक रिक्शे दिखज दिखाई दे रहे।

और रअ बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

यहां से काफी बढ़िया नेचर दिख रहा है जैसे कि राइट साइड में बहुत बड़ा पहाड़ है।

बिल्डिंग बनाई गई है बिल्डिंग के सामने हरी कलर की घा --

पुतले को कपड़े पहना कर रखे हुए ऊपर बैनर --

यहाँ पर शादी काफी धूमधाम से मनाई जा रही है।